इसके बगल में जो कंटेनर है। यह भी बहुत अच्छा है यह हमारे यह हमारे फुल्ली गाँव का है।

यह बुध है औरी ये कृष्णा जी नग रहा है। यहाँ पे सुदामा भी बीजी है।